बहोत अनुकूलित होगा इस जगह पॉल्यूशन नहीं ही होगी।

यह एक मिठाई की दुकान लग रही है और इसमें एक फ्री फ्रीजरेटर --

यह एक रोड के बगल वाला फूड मार्केट है जिसके सामने अमेरिकन टूरिस्टर का बैग हाउस है।

कल जो है अपने मछली में पानी पटा रहे हैं दूसरी तरफ जो शॉप वाले हैं वो बैठे बैठ के ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं।

यह एक कपड़े की अच्छी दुकान है।

ये एक तरफ का बाल कट चुका हैं और दूसरी तरफ की बाल प्रगति में हैं काटी जा री--